इस दृश्य में एक खाली सड़क नजर आ रही है।

इस दृश्य में हम देख सकते है यहां पर काफी सारी दुकानें नज़र आ रहे हैं और यहां पे दाहिने और एक बाइक भी खड़ी हुई नज़र आ रही है।

कुर्सी पर एक बुजुर्ग आंटी भी बैठी हुई नजर आ रही हैं जिन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

रिसेप्शन एरिया पर लगे हुए दो गमले भी नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर पौधे लगे हुए हैं।

राइट साइड में एक लड़का अपने हाथ पर बैग लिए हुए जाता हुआ नजर आ रहा है।

जीसमें की ऊपर साइड लाल रंग लगा हुआ है और नीचे साइड हरे रंग का तो उसका जो वो बना हुआ दिखाई दे रहा है पीले रंग--

इस चित्र में तीन बेड बॉक्स नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में एक लेफ्ट हैंड साइड पर आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं यहां पर काफी सारे समान--

लगे हुए नजर आ रहे हैं ऊपर एक पंखा चलता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर हम देख सकते हैं छत पर पीले रंग के कुछ--

वाटर कूलर भी रखा हुआ है जो कि कुर्सी पर है।

महिलाएं पूजा करती हुई नजर आ रही है।

फोन पकड़े हुए चलाते हुए नज़र आ रही है। यहां पर कुछ मर्द भी नज़र आ रहे हैं।

उसके पीछे कई एक्सरसाइज करने के लिए--

और यहां पर कुछ ट्यूबलाइट्स और सीलिंग लाइट्स भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है।

दाएं और बाएं और दो झंडे भी नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा यहां पर सामने दो बड़े बड़े बोर्ड भी नजर आ रहे--

दो पंखे ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं तो एक पंखा यहां पर नहीं--

यह आदमी कुल्फी बेचता हुआ नजर आ रहा है वहीं दूसरी ओर--